बादल दिख रहा है बादल में कलर दिख रहा है आसमानी है वाइट है रंग बिरंगे कलर दिख रहे हैं नदी दिख रही है।

गाड़ियों का शोरूम दिख रहा है शोरूम में ऑटो दिख रहे हैं गाड़ी दिख रही है वैन --

वाशिंग मशीन दिख रही है बोर्ड दिख रहे हैं रेड कलर दिख रहा है उसमे एक जेंट्स खड़ा है पंखा दिख रहा है चद्दर पड़ी हुई है चैनल गेट दिख रहा है मकान का कलर दिख रहा है बल्ब दिख --